में खाना बना रहा है इस आदमी ने खाना बनाते समय अप्रिन पहना हुआ है।

ये टैम्पो खराब हो गया है और ये टैम्पो खुद --

और ये क्रेन टेंपू को उठा कर ले जा रही हैं।

अपनी किताबों की दुकान में भगवान की पूजा कर रहा है।

ये इस चित्र में लोग यहाँ व्यायाम करने आते है सुबह सवेरे क्युकी व्यायाम सेहत के लिए लाभ दायक होता है।

यहां पे कोई कार्यक्रम चल रहा है और यहां पे साथ में एक डी_जे रखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे खंभे लगे हुए हैं जिनपर बिजली की लाइंस लगी हुई है।

यहाँ पर बहोत सारी एलसीडी रखी हुई है।

ये एल_सी_डी ग्राहकों को बेचने के लिए रखी गई है ग्राहक यहां आके एल_सी_डी ले जा सकते हैं।

ये द्रिस्य एक ड्रोन से लिया गया है।

इस पौधे के बहोत से फायदे हैं यह दवाई बनाने के काम आता है।

और यहां पे एक का काले रंग की कुर्सी और एक मेंज भी रखा है और कुछ फाइल्स भी--

दुकान हैं और यहां पर बहोत सा सामान मौजूद है।

पिटेस रखी हुई हैं जो ग्राहक लेने के लिए आते हैं क्युकी इन्ही शीटो पर प्रिंट किया जाता हैं।

ये एक कार शोरूम है यहां पर लोग कार खरीदने के लिए आते हैं।

ये एक दुकान है जिसका नाम फेयर एंड ब्यूटी शॉप है यहां पर बहोत सारे--

ओर साथ में हम यहां पे एक नीले कलर की अलमीरा भी देख रहे हैं।